इस पिक के माध्यम से हमें यह संकेत मिल रही है कि यह किसी वैवाहिक कार्यक्रम होने का दर्शा रहा है जहां की स्टेज पूरे रूप से हरे रंग में तब्दील की गई है बहुत सारे लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं।

है और इस स्टेज पे आप जैसा की देख सकते है की वहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं और दो लोग गाना गाने का काम कर रहे हैं एक आदमी कुर्ता पायजामा डाल के उस तरफ देख रहा है।

इस पिक के माध्यम से हम यह देख सकते है ये किसी गिरजा घर का पिक है जो कि उजले रंगों से रंगा हुआ है और --

इस पिक के माध्यम से हम ये देख सकते है ये किसी सैलून का पिक है जहाँ पे एक आदमी बाल कटवाता हुआ नजर आ रहा है।

वहीं दूसरा आदमी बाहर बैठ के अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिख रहा है वहीं हजाम हाथ में कैंची और कंघी लिए हुए है जो की ब्लू कलर का पैंट और चेक का शर्ट पेहने हुए अपना काम कर रहा है।